इधर पे फैन रखा हुआ है और इस पर माइक्रोमैक्स भी लिखा हुआ और भी रखे हुए हैं और एक इनसर भी बैठा हुआ हैं।